कुछ शॉप जैसा प्रतीत हो रहा है पंडाल जैसा लगा हुआ है कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं कुछ औरतें भी हैं एक व्यक्ति झुका हुआ कुछ देख रहा है।

उसके हाथ में कुछ है सिर पे केप लगाए हुये है उसके सिर के ऊपर जो है टीनसेट पड़ा हुआ है।

यह एक दुकान जिसमें बहुत सी पुस्तके लगी हुई है एक ब्यक्ति है जो पेन पकडे हुए है।

कुछ मछली को देख रहे है कुछ मछली खरीदने वाले है। मछली बेचने वाला भी बैठा हुआ है एक बाल्टी भी रखी हुई है।

सामने लेडीजें दिख रही हैं। एक लेडीस के बगल में पर्स टंगी हुई है।

सामने गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस के सामने --

एक दिख रहा है जो सफ़ेद शर्ट काली पेंट पहने हुये है और खिलोनों को देख रहा है।

सामने स्टेज है। स्टेज पे एक टीचर अनाउंस कर रही हैं। कुछ बच्चे कुर्सियों पे बैठे हुये हैं।

ये एक रास्ता है जिसपे ऑटो खड़ा हुआ है।

उसके सामने एक साईकल बाइक जा रहा है। कुछ दुकानें लगी हुई है फूलों की।

टीचर कुछ पढ़ा भी रही है। बच्चे कुछ बना रहे हैं। खिलौने जैसे रूप में --

चारो बच्चे पेंटिंग को दिखा रहे हैं। वृक्ष लगे हुए हैं।